वाओ यहाँ पर एक क्लिनिक कि तरह है ये मेडिकल हॉल ये बहुत अच्छा है यहाँ पे--

पता है कोचिंग भी होती है और यहाँ पर क्लास टेन से लेकर त तक पढ़ाया जाता है और यहाँ एक वाइट कलर का दीवार है उसमें पोस्टर लगा हुआ है आप फिजिकल का होता है।

पीछे में पूरे पहाड़ की तरह है नीचे में पूरे घास दिये हुए हैं और इससे आसमान भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है और वहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं।

ये एक बिल्डिग है जहां पे व्हाइट कलर का हैं उसमे ऑरेंज का बाउंड्री हैं।

देख- चल रहे हैं यहां बिल्डिंग के किनारे मे एक पेड़ है जिससे ऑक्सीजन बहुतअच्छा मिलेगा बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है जो बहुत अच्छा है।

यह एक पोस्ट ऑफिस की तरह है। जिसके ऊपर व्हाइट कलर का बिल्डिंग है ब्लू ब्लू वो सब खिड़कियां लगी हुई है उसके ऊपर एक पोस्टर है जिसमें डॉक्टर की पूरी फोटो है।

अ अ वहां पर पार्किंग के लिए भी जगह है ये बिल्डिंग बहुत बड़ा है ग्रीन कलर का है एक स्टेच्यू है।

ये गंज है जो की बहोत बडा है और यहां पे एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग है।

नीचे पे एक मेज़ है जो ब्लू कलर का है और वाइट कलर का उसका पुरा पैड प्लेट है ऊपर एक पै --

ये एक रोड है जहां पे बहुत सारे आदमी चल रहे है किनारे-किनारे बहुत सारे बिल्डिंग है सामने मस्जिद भी नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में और ऊपर आसमान है।